मशीन का कलर ब्लू है ग्रे है ऑरेंज है।

तकिया है तकिया कलर लाइट ब्राउन है।

मेहंदी कलर का सूट पहनी है हाथ में घरी है।

पर्स ब्लैक है कार्पेट रेड है पर्पल है।

पूल है कलर ग्रे है पूल के नीचे बहुत सारे ऑटो लगे हैं।

केले का कलर येलो है पाइनएप्पल है।

रखिया कलर ग्रीन है कंबल है कंबल का कलर रेड है।

टब है टब का कलर रेड है और एक लड़का है व्हाइट कलर का माक्स लगाया हुआ है बहोत सारे व्हाइट बल्ब है।

कार्पेट है कारपेट का कलर ग्रीन है बहुत सारे--

ग्रीन है ब्लैक है बहुत सारे--